जैसे गुब्बारों के बाहर कुछ सभी के चप्पल रखे हुए हैं बाजु में एक मंडप दिखाई दे रहा है।

जो की कुछ लाल रंग के और हरे रंग के दिख रहे हैं वो कैरेट्स में रखे हुए हैं।

चित्र में एक रूम दिखाई दे रही है जहां पर बैठने के लिए ब्रेनचेस और चेयर्स है रूम गुब्बारों से सजाई हुई है।

दीवारों पर बहोत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं सामने बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी है कुछ इंसान अपने -अपने काम कर रहे हैं अगल-बगल खंभे और पेड़ पौधे हैं ऊपर नीला आसमान है।

ऊपर नीला आसमान है।